यहाँ पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैंजो एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सरसाइज करा रहा है काफी सारे झंडे लगे हुए हैं।

उसके पीछे एक तालाब है जिसमे पानी भी है और एक नारियल का पेड़ है जो काफी बड़ा है और हरा भरा है और बाइक वाले एक एक रास्ता पार कर रहे है।

यहाँ पे दो व्यक्ति बोट चला रहे है और पानी काफ़ी भरा हुआ है और पानी के सामने काफ़ी हरे -भरे पेड़ है जो काफ़ी बड़े भी हैं।

बड़े-बड़े मकान बने हुए है जो हरे-भरे पेड़ों से अच्छे लग रहे है और उसके बगल में एक तार का खंभा भी है।

यहाँ पे फल फुल बेचा जा रहा है जो फल फुल बेचने का दुकान है जैसे अमरूद सेब केला अनाशपाती भी रखे हुए है और यहाँ एक मार्केट है ।